ये फोटो एक फूल के बाजार का है।

ये फोटो एक बिल्डिंग के बाहर का है जिसका रंग पीला है।

और इसके ऊपर मिट्टी फेंका हुआ है।

वो फुटबॉल से खेल रहे हैं नीचे में घास लगा हुआ है।

इसमें दो पुरुष और एक महिला वोटिंग कर रही है।

साइड साइड में पत्थर गीली है और यहां पर साइड में एक बाउंड्री टाइप का किया हुआ है।

यहां पे इसका प्राइस टैग भी रखा हुआ है।

ये फोटो एक कॉरिडोर का है य--

यहां पे एक बिल्डिंग है जो की पिस्ता ग्रीन कलर का है इसके आस पास बहोत सारा बड़ा बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

फोटो एक स्टेशन के पास का है जहां पे पटरी बिछा हुआ है और एक ट्रेन आ रहा हैं।

फोटो एक पार्क का है जहां पर फुटपाथ एरिया बना हुआ है।

और इसके किनारे किनारे कुछ घास उगे हुए हैं।

और यहां पे फूल लगे हुए हैं और बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और यहां पे एक मोर है जो की ब्लू रंग का है।

जहां पे बहुत सारा हैंगर लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

कुछ लोग एक साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं।

नीचे हरे रंग का मैट बिछा हुआ है।

जोकि सफेद रंग का है और इसमें लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है।

बगल दुकान के बाहर बहुत सारा बाल्टी रखा हुआ है।

जहां पे कहीं पे सुखा हुआ है।

है जिसका रंग ऑरेंज पीला हरा और सिल्वर रंग का है।

और नीचे में घास भी लगी हुई हैं।

और यहां पे एक काले रंग का चेयर रखा हुआ है।

एक डब्बा है जो कि सफेद रंग का है।

यहां पे बहोत सारी खिड़कियां बनी हुई है।

लाल कलर का ढक्कन है जिसके नीचे व्हाइट कलर का बाल्टी रखा हुआ है।

ये फोटो एक झील के किनारे का है।

यहां पे बहुत सारा बेड लगा हुआ है जिसमें बिस्तर बिछा हुआ है।

नीचे जमीन पर कुछ चप्पलें गिरी हुई है।

फर्श की बॉर्डरिंग लाल रंग से की गई है।

बच्चे एक साथ लाईन लगा कर खड़े है।

और नीचे में भी लाल रंग का कुछ बॉटल रखा हुआ है।